इस तस्वीर में हमें प्लानेट फैशन दिखाई दे रहा है खादिम्स का स्टोर भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें लोकसभा दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में काफी सारा पानी भरा हुआ है।